कलर व्हाइट कलर है ऊपर यहाँ पे नेट लगा हुआ है और एक बोट है जिसमे व्हाइट कलर है उस-ऊपर इसके भी ग्रीन कलर का नेट लगा हुआ है और यहाँ पे हमे बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे है।

और यहाँ पे अ बड़े बड़े पेड़ दिखाए गए है ग्रीन कलर के और इसके अलावा हमें दूर कुछ घर भी दिखाए गए है।

इस इमेज मे हमे जहाज दिखाया गया है जहाज का कलर ब्लू दिखाया गया है और व्हाइट भी दिखाया गया है इसके अलावा यहा पे कूछ पेड़ भी दिखाए गए है।

कुछ व्हाइट कलर की कार रखी हुई है और यहाँ पे स्कूटीयाँ रखी हुई है।

इस तस्वीर मे हमे समुद्र दिखाया गया है समुद्र मे बहुत बड़े बड़े जहाज लगाए गए है इसके साथ छोटी छोटी नाव भी दिखाई गई है।

और ऊपर हमे आसमान दिखाया गया है जो व्हाइट कलर का ब्लेक दिखाई दे रहा है थोड़ा और यहा पे एक कार दिखाई गई है कार का कलर व्हाइट --

एस इमेज हमें एक बस दिखाई गयी है जिसका कलर रेड है और इसके आगे एक दुसरी बस जिसका कलर भी रेड दिखाया गया है।

इसके अलावा यहाँ पे ब्लू और ऑरेंज कलर के अक्षरों मे कूछ लिखा हुआ दिखाया गया है और यहाँ पे आसमान दिखाया गया है।

इस तज़वीर मे यहा पे हमे बहुत सारे पेरेट्स नजर आ रहे है येलो ग्रीन ब्लू ।

इस तस्वीर मे यहाँ पे हमे एक बुक शॉप नजर आ रही है बुक शॉप के अंदर बहुत सारे बुक्स रखे हुए है का गेट है जो येलो कलर का दिखाया गया है।

मूर्तियाँ बनाई गई है इसपे दीवार पे पीछे एक दीवार है जिसका कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है जिसके पास बहुत सारे लोग खड़े हुए है ओ --

इस तस्वीर मे हमे एक बूक सेंटर दिखाया गया है बूक सेंटर के अंदर सारी बुक रखी हुई है अल्मारिया बनी हुई है जिनके अंदर बुक अच्छे से जमी हुई है।

इस तस्वीर मे हमें यहा पे हमे एक-अ-हं दुकान दिखाई गई है जो बुक सेंटर है यंहा पे जो उसमे सारी बुक्स रखी गई है।